यह एक टायर पंचर की दुकान है इस दुकान के सामने एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई है।

और दो हवा के पाइप भी टंगे हुए हैं।

यहां पर बहोत सारी लाईटें भी लगी हुई है।

बोर्ड के पास में दो स्कूटी खड़ी हुई है।

और पीछे कुछ पेड़ भी खड़े हुए है।

इसमें बहुत सारे सीसे भी लगे हुए हैं।

इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी मशीनें भी रखी हुई है।

इसमें एक बिजली का बोर्ड भी लगा हुआ है।

पीछे की साइड में एक बोर्ड भी लगा हुआ है।

इस तसवीर में हमको एक प्लास्टिक का पाइप खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।